ये किसी स्कूल के अंदर के तस्वीर है। जिसमें एक

यह तस्वीर किसी रेलवे स्टेशन की है जिसके प्लेटफॉर्म पे सुद्धा पार्लर खुला हुआ है।

यह तस्वीर किसी स्कूल के क्लासरूम के देखी जा सकती है जिसमे बहुत सारे बच्चे हैं।

और सभी कुछ न कुछ अपना काम कर रहे है। और सभी ड्रॉइंग कर रहे हैं।